ये किसी का हॉल टाइप में है जहाँ पे जिम वाली मशीन रखी हुई है यहाँ पर चार पाँच मशीनस रखी हुई हैं जिनका कलर ब्लैक है नीचे कार्पेट डला हुआ है सामने एक विंडो दिख रही है जो की ओपन है मॉर्निंग का टाइम है।

यह एक बहुत पुराना जंगल टाइप का नजर आ रहा है यहां पत्थरों से बने हुई है रूम टाइप में हैं इनके ऊपर कुछ लिखा भी है वाइट कलर से यहाँ पे घास जमी हुयी है गर्मी का टाइम है धुप निकली हुयी है।

स्टेज है जहाँ पे ट्वेंटी सिक्स जनवरी का लगता है फंक्शन्स चल रहा है यहां पर डेकोरेशन हुआ ग-- हुआ है।

छोटी-छोटी सी घास जमी हुई है आजू-बाजू में खेत भी है जहाँ पे अनाज लगा हुआ है बागी टाइप में दिख रही है आजू-बाजू प काफी ज्यादा पहाग लगा हुआ है यहाँ पे खेत है।